यहां पे वहां एक बड़ी सी बिडिंग है जिसके ऊपर--

यहां पे एक बड़ी सी बिल्डिंग है।

अदम नीचे साइड दुकानें है दुकानों पे--

पीछे एक ए_सी भी लगी हुई है छत पे वाइट और ग्रे --

वे कपड़ा बिछाया हुआ है मैं मंडप पिंक कलर का है।

ऊपर काफी सारे लाइट्स लगी हुईं हैं।

इन ऑरन बिल्डिंग को लाइन से तीन खिड़कियां है।

और काफी साइड डेकोरेट का सामान है एक कांच के दरवाजे है टीना--

ये स्विमिंग पूल पानी पूरा आसमानी नजर आ रहा है।

चेयर रखी हुई है और एक टेबल है ऊपर सेट लाइट्स है।

यहां पे एक आदमी ठहरा हुआ है जिसने टोपी पहना हुआ --

यहां पे अं अंगूर है काले अंगूर--

और हरे अंगूर का गुच्छा रखा हुआ है और अनार भी है।

यह फलों की दुकान है केले भी हैं।

यह औरत अ घर बनाने का सामान रखा हुआ--

और पीछे लड़के हैं जो वाइट रंग के कुर्ते पहने हुए हैं और बाजू में एक आदमी बैठ के देख रहे हैं।

ये और जारी की और सुराखों की ड--

है और ऊं ऊपर भी दो खिड़कीया है।

एक दरवाजा है और बड़ी सी खिड़की है।

जींस और शूज पहने हुए हैं और बाजू में फ़त्तरो की गुफा है।

है और बैठने के लिए कुर्सियां हैं लोग बैठे हुए हैं।

यहाँ और काफी सारा सामान रखा हुआ है।

यहां पे एक बड़ा सा कपड़ों का दुकान है जिसमें काफी सारे--

कपड़े हैं लड़ लड़कियों के और सामने स्कूटी भी है और अ दुकान का नाम है मारवा--